और पेड़ दिखाई दे रहा है नीचे रास्ता है।

पत्थर दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

खिड्कियों मे सभी मे छत दिखाई दे रहा है बालकनी दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे है और एक मंदिर भी--

बच्चों का पार्क है जिसमे घसरगुंडी एवंम --

एक पिलर बने हुए है जिसमें दासा पत्थर लगे हुए है वन बाय वन कुछ डिज़ाइन भी बनी हुई--

एक डब्बा दिखाई दे रहा है दो सीड़ि दिखाई दे रही है रैलिंग लगी हुई है पिलर दिखाई दे रहे है पिलर काफी बड़े--